ये गौत्तम बुद्ध भगवान की मूर्ति है वो कमल पे विराज है उसके बगल में गार्डन है।

खड़िया और वहां गाड़ियां लगी हुई है उसके बगल में टेंपो है और कोटक महिंद्रा

बस है। हाँ सवार हो के नहीं जा सकते। ऍम और ऍम है। फॅस और आस पास पहुँच लगे हुए हैं। मिला है।

यहा कई लोग दिखाई दे रहे है और ये मठ --

पांच बाइक्स खड़ी है बाइक्स का रंग रेड एंड ब्लैक है।

ये गौतम भगवान की विशाल मूर्ति है इसके सामने

गौतम बुद्ध भगवान जी की मूर्ति है इनके जिस पथर से बनी है वो सफेद पत्थर है ये कमल पर बिराज है--

चारों दिशाओ पे पेड़ है माउंटेन है आसमान का रंग नीला है।

गौतम भगवान जी का धाम है गौतम भगवान स्लेटी कलर के हैं का आसमान है चारों तरफ का आसमान है चारों तरफ कमल पे विराज हैं --

तीन-तीन लाइट्स जली हुई है तीन खम्बे है दो लोग खम्बे के तरफ देखते हुए नजर आ रहे है